और व्हाइट कलर की एसी है स्टेज है जो कि पीले कलर का स्टेज है पिलर है जो कि गो --

सामने स्टेज है जो की लाल और सफेद बलून से बना हुआ है| स्पीकर बॉक्स है जो ब्लैक कलर की वाइट कलर की लाइट जल रही है| सीलिंग फैन है वो भी वाइट कलर के हैं।

हा रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है आ देन हॉल है। सफेद पीले नीले कलर की फूल हैं लाल कलर की फूल हैं।

रेड और पिंक कलर की चेयर हैं उसमें से कुछ सफेद कलर की भी हैं। सोफे हैं रखें चार जो कि सफेद कलर के रेड कलर का कार्पेट बिछा हुआ है।